यहाँ कुछ लोग मिटी कर मीटिंग कर रहे हैं जो कि सभी को बता रहे हैं यहाँ पे लाइट है बत्ती है बुक भी है।

और कोई देख रहे हैं यहाँ पे लेडीज और जेंस दोनों भी अवीलेबल है।

और यहाँ पे रहने खाने का भी व्यवस्था है।

मारुति सुजगी का शोरूम भी नजर आ रहा है यहाँ पे लाइट भी है पॉल में बहुत सारे तार भी हैं।

ए नीचे की ओर देख रहा है और पैप निकाला गया है जो कि--

यह एक वाइपर का शोरूम नजर आ रहा है।

जिसमें अलग-अलग तरह का वाइपर नजर आ रहा है डिब्बा भी नजर आ रहा है।

और देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है बगल में घड़ भी है।

और बहुत लोग इस प्रोग्राम को ध्यान से सुन रहे हैं।

क्रीम पाउडर रखा गया है इसमें ए _सी भी लगा हुआ है।

और सुंदर सा लाइट भी है और नीचे का फर्श बहुत ही बढ़िया है।

इसमें एकक रैक में सुंदर- सुंदर सामान रखा गया है।

इसको काटने के लिए और कुछ मछली फ्रीजर में से निकल कर के--

जो कि देखने में अच्छा लग रहा है।

और इसमें अलग-अलग तरह का ए सी भी है और इसका नजारा बहुत ही सुंदर है यहाँ पे लाइट भी है।

जो कि एक लेडिस से जो कि खाना सर्व करती है।

फूल अच्छा अच्छा सा है।

यह एक शादी के सजावट है जो कि बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के फूल हैं।

नीचे में कारपेट बिछाया गया है।

इसमें एक लड़का जा रहा है और इसमें देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है।

और कुछ लोग दुकान से खड़ीद कड़ के--

नीचे फूल है और नीचे घास जमा हुआ है।

जो कि कुछ लोग योगा कर रहे हैं सुबह-सुबह।

और अगल-बगल में इसके पेड़ है और अगल-बगल में घड़ भी दिखाई दे रहा है।

हाँ ये एक मार्केट नजर आ रहा है जो कि मार्केट में बहुत ही भीड़ है।

ए भीड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे बाइक भी लगाया गया है स्कूटी भी है।

और एक लड़का भी है जो कि बैठा हुआ है।

और मसाला भी रखा हुआ है।

कुछ लोग सामान लेने के लिए भीड़ भी लगाए हुए हैं।

लग रहा है कि यहां पे शादी हो रहा है तो कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं एक बच्ची जो है कि मुंह में हाथ डाले --

प्रकार के लाइट दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे का फर्स बहुत ही साफ है।

और डेकोरेशन अच्छा किया गया है और यहाँ पर्दा भी है कुर्सी भी है टेबल भी है नीचे का फर्श बहुत ही साफ है ।

ये एक सड़क दिखाई दे रहा है जिसमें पेड़ है।

फिर इसके बगल में सुनेना प्लेस तानिया ग्रोसरी स्टोर आरो होम --

यहाँ एक मोमबत्ती है।

और अगरबत्ती भी है और लाइट भी लगा हुआ है।

नीचे पेड़ पौधा भी है।

जो कि खूब सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ अलग-अलग प्रकार के फूल से जयमाला को सजाया गया है।

इस पे दुल्हा दुल्हन आ कर के दुल्हन दुल्हा आ कर के बैठेंगे।

और लिपिस्टिक भी है पेन भी है।

जो कि ध्यान से सभी लोग देख रहे हैं कुछ भी इसमें सजाया गया है ।

ट्रेन इंडियन रेलवे का एक--

और कुछ लोग अंदर हैं और एक बाहर है जो कि फोटो खींचवा रहा है अगल-बगल में दुकान का शटर नजर आ रहा है।

और उसके घर में एक खजूर का पेड़ है जो कि चारगो-पाँचगो खजूर का पेड़ है लाइट भी है।

एक लड़का सेल्फी ले रहा है बाकी सब कोई इसको देख रहे हैं।

यहाँ जिम करने के लिए अलग-अलग प्रकार के--

यहाँ पे एक भारत का झंडा नजर आ रहा है।

जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है।

और नीचे एक रोड भी नजर आ रहा है।

दो लड़का है जो कि आपस में बात कर रहा है लग रहा है कि दुकान में से कुछ समान खरीदेंगे।

आह नीचे पैर पे पैर में चप्पल पहना हुआ है ।

यहाँ एक टी शर्ट का सॉफ है।

और इसके अगल में लेडीज का भी कपड़ा नजर आ रहा है।

यह किसी चीज का मैदान है जो कि लाइट लगाया हुआ है मैदान बहुत ही साफ है।

यह एक ऑफिस नजर आ रहा है जिसमें--

और नीचे का फ़र्श बहुत साफ है गाड़ी अलग-अलग प्रकार का है।

फोटो खींचवा रहा है टेबल कुर्सी पर बैठ कर के टेबल पर पानी है दोनों को--

मैगी बना बनवा कर के मगवाये हैं और नमक भी है लाइट भी बहुत ही सुंदर--